यहां पे एक गैलरी जैसे दिखाई दे रहा है और यहां पे एक ऑटो आ रही है।

बढ़ियाँ से बक्सा जैसा रखा हुआ है।

और एक बाइक लगा हुआ है सामने में और अजीब --

कुछ लोग दिखाई दे रहे है जो ऊपर में आसमान पूरा --

कई लोग भी दिखाई दे रहे हैं ढोलक बड़ा-बड़ा दिखाई दे रहा है।

नारियल जैसे दिखाई दे रहा है ऊपर में प्लस का चिन्ह --

यहाँ पर बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और यहाँ के नीचे में कुछ गेट - वेट सा दिख रहा है और वो लोग --